झाड़ियां उगी हुई हैं घास लगी हुई है।

शीशे लगी हुई है लाइटें लगी हुई है।

बिल्डिंग बनी है कांच लगा हुआ है।

टोकरी रखी हुई हैं लोग हैं यहां पर काफी सारे।

कांच के गिलास रखे हुए हैं।

झूमर लगे हुए हैं टेंट लगा हुआ है।

पाइप लगे हैं बड़े बड़े यहां पर।

लाइट लगी हुई है घर बना हुआ है।

यहां पर हॉल बना हुआ है।

लाइट लगी हैं बिजली का खंबा लगा हैं।

रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं।

पेड़ लगे हैं काफी सारे पानी की टंकी रखी है घर बनें हुई है।

फूलों की मालाए लगी हुई है लड़ियां लगी हुई है।

लहंगे रखे हैं शेरवानी रखी हुई हैं।

यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं शेड डला हुआ है।

खम्भा लगा हुआ है पेड़ लगे हुए हैं।